ये इस इमेज में मुझे एक नाव दिखाई दे रही हैं नाव में बहोत सारे उम्म लोग बैठे हुए है।

इस इमेज मे मुझे बहुत सारी लेडिजे बैठी हुई दिखाई दे रहे है।

बस के ऊपर बोहोत सारे लोग अपना सामान रख रहे हैं और नि- बस के गेट से भी बोहोत सारे लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं।

यह व्यक्ति अ क व्यक्ति बैंगनी कलर की टी-शर्ट पहने है और चश्मा लागाये है।

इस इमेज में मुझे एक रोड दिखाय दे रहा है रोड के ऊपर एक बहोत बड़ा पुल है यहां पर एक ऑटो खड़ा है ऑटो के बाजू में एक व्हाइट कलर की जिप दिख रही है।

मुझे यहां पर एक खेत सा दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रीन कलर के कुछ लगे हुए हैं और एक लड़का है जो कान में इयरफोन लगा है और स्वेटर पहने हुए है।